एप्पल और ऑरेंज रखा हुआ है।

यहाँ पे एक अलग ही किस्म के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि छोटे हैं ईनकी पत्तियां चिकनी दिखाई दे रही है ये पक्षी देखने में हल्का ब्लैक और ब्लू कलर का है।

इस तस्वीर मे कई सारे न्यू चेयर रखे हुए हैं जो की रेड एण्ड ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बिजली का बोर्ड और पंखे लगे हुए हैं जो की--

इस तस्वीर मे भवन निर्माण का कार्य चल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग का कार्य चल रहा है यहाँ बहोत सारे रॉड खड़े हुए है।